मैं यहां देख पा रही हूं एक बड़ा सा रूम है जिसमें दो इंजीनियर छेड़ी हथौड़ी लेके--

ते बहुत सारे गमले रखे हुए हैं गमले में बहुत ही अच्छा अच्छा पेड़--

मैं यहां देख पा रही हूं एक बहोत ही बड़ा होटल है जिसका नाम --

और वहां पे बहुत सारे पत्थर--

मैं देख पा रही हूं यहां बहोत सारी सुंदर सुंदर ऊंची ऊंची--

गड्ढे में पानी इकट्ठा नजर आ रहा है रोड पर गाड़ी चल रही है।

चारों तरफ मशीन फैली हुई नजर आ रही है।

का दरवाजा बंद है एक दरवाजा खुला है ऊपर पंखा है चारों तरफ लाइन के तारे बिछी --

आस पास गांव है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।